यहा तस्वीर मे मुझे एक काँच जैसे फ्रेम दिखाई दे रही है जिसपे मुझे ट्रांस्परेंट ग्लास दिखाई दे रहे है दो आदमी दिखाई दे रहे है।

एक आदमी ने यहाँ पे टी-शर्ट पहनी हुई है और एक आदमी ने यहाँ पे शर्ट पहनी हुई है और एक ने ऑफ व्हाइट पहना है और एक ने व्हाइट पहना है एक ने लोअर पहना है और एक ने जीन्स पहनी है नीचे की ओर मुझे कुछ जमी नीचे की ओर मुझे कुछ जमीन दिखाई दे री है जो कि ग्रे कलर की --

यह तस्वीर में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में मुझे एक मूर्ति दिखाई दे रही है और ये किसी अ सामने की ओर मुझे यहाँ पर भीम राव अम्बेडकरजी की तस्वीर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और एक स्टेचू और भी दिखाई दे रहा है यहां पे मुझे दो लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे है जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है यहां पर कुछ कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की उसके ऊपर --

यह तसवीर मुझे एक एटीएम दिखाई दे रहा है और एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया --

दो इम्प्लॉइ दिखाई दे रहे है जो की कार के ऊपर कुछ कर रहे है पीछे की और कुछ वोल दिखाई दे रही है ओर यहां पर मुझे अ कुछ मेट भी बिछी हुई दिखाई दे रही है जो की ब्लैक कलर की मेट है।

फर्श दिखाई देरी जो की ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है और ये सीन देखने पर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार--

सिरी मुझे एक अस्पताल का ब्लॉक दिखाई दे रहा हैं जहा पे मुझे बहुत सारी टेबल रखी हुई दिखाई देटेबल के ऊपर यह पर मुझे आ म ग रेग वाई ग्रीन कलर का यहा पर वो दिखाई --

पीछे की और मुझे कुछ घास भी दिखाई दे रही जो की बहुत ही हरी भरी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर मे मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बच्चे यह पे गरबा खेलते हुए दिखाई दे रहे है और यह पर इन्होंने घाघरा पहन हुआ है और ये ब यह पे मेल गल बल लड़के है उन्होंने यह पे व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है।

पंखा चलते हुए भी दिखा जा सकता है यहा पर मुझे कुछ फूल भी दिखाई दे रहे है जो की मुझे अच्छे दिखाई दे रहे है।